इसके साथ ही यहां पर टेबल पे एक सीजर भी रखा गया है।

और इसके साथ यह स्कूल व्हाइट कलर का है।

जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है।

उसके साथ ही यहां पर एक चद्दर का घर भी दिखाई दे रहा है।